बहोत सारी मछलीयां है और डिबे भी नजर आ रहे हैं।

जैसे कि मैं देख रहा हूं ये कहीं का रेलवे स्टेशन है।

और यहां भी एक पेड़ पौधे बनी है हरा भरा दिख रहा है।

देख रहा हूँ यहाँ साइड फ़र्निचर की दुकान है और बहोत सारे फोर सोफ़े वोफ़े हैं और बहोत सारी कुरसियाँ हैं।

और यहां बहोत मस्त पर्दे वर्दे लगे हुए मस्त ब फंक्शन हुआ है।

चटाई रे और यहां सफेद कलर का डिजाइन --

जैसा कि मैं देख रहा हूं यहां कोई डांस कॉम्पिशन का--

जैसा मैं देख रहा हूं कि यहाँ पेट्रोल पंप का वो बना हुआ है ऍटो गेट दिख रहा हैं।

और यहां अ पीछे साइड एक ऑफिस दिख रही है।

गाड़ियां बस वस खड़ी हुई हैं और आदमी एक नजर आ रहा है।

और दुकान की सजावट मस्त किया है और सोफे ओफे बढ़िया रखा अखा है सबेर दुकान--

एक वेल्डिंग भी समझ में आ रही है टप्पर वप्पर लगा हुआ है और यहाँ कु कुछ पेड़-पौधे भी --

अ ताला वाला की लगता है ऐसा एक दुकान है और--

लेकिन यहां आदमी नजर नहीं आ रहा है।

कटिंग कर रहे हैं एक आदमी बढ़िया कुर्सी में बैठा हुआ मोबाइल चला रहा है।

जैसा कि मैं देख रहा हूं ये कोई पार्लर की दुकान है।

और शायद यहां दो तीन लोग भी समझ में आ रहे हैं।